ये बहुत ही ज्यादा अंधेरा और सुनसान इलाका हैं ऊपर का सब कुछ ब्लैक-ब्लैक दिख रहा हैं और नदी का जो पानी हैं वो भी ब्लैक-ब्लैक दिख रहा हैं आस पास कोई भी नहीं दिख रहा हैं और ये बहुत ही ज्यादा सन्नाटा वाला एरिया हैं।

कुछ लोग सामने की तरफ है कुछ लोग उस साइड है कुछ लोग बहोत पीछे की तरफ है कुछ लोगो को दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे--

आसमान का ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे एक नारियल का पेड़ दिख रहा है और उसके साइड में एक बहोत बड़ी ईमारत है और उसके अपोजिट साइड में एक बहुत बड़ी खम्बा जैसा है।

खाली जगह है जहां मिट्टी से खुदाई की गई है अभी बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में और दूर दूर तक बहुत बड़े बड़े पेड़ है यहां पर ग्रीनरी ग्रीनरी और नीचे का फर्श पूरा मिट्टी मिट्टी है।

नदी के ऊपर बहोत सारे पेड़ उग गए है और ये बहोत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में ऊपर का पेड़ दिख रहा है इधर से बस और ये नदियों का भी दिख रहा है।

मिट्टी में बहुत सारे मशरूम है मिट्टी का जो कलर है जो यलो -यलो कलर का लग रहा है हर तरफ बहुत ही ज्यादा सुंदर और वाइट कलर के है और एक साइड से लाइट आ रही है।

और एक साइड पूरा ही अंधेरा हैऔर उसका जो साइड में है वो थोड़ा- सा ऊपर किया हुआ है वो दिख--

और ये सामने की तरफ हैऔर घर थोड़ा- सा खराब लग रहा है और गमले में और भी फूल लगाए हुए है वो खिला नही हैअभी--

और आधे फूल थोड़ा सा यलो यलो हो गए है जो की खराब होने की बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुनहरी और देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे है और बड़े -बड़े पेड़ भी है और बीच में --